नमस्कार !
scilab ode function प्रयोग करके odes हल करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि
* scilab ode फंक्शन कैसे उपयोग करते हैं
* odes के विशिष्ट उदाहरण कैसे हल करते हैं और
* सॉल्यूशन को कैसे प्लॉट करते हैं
विशिष्ट उदाहरण निम्न होंगे:
* simple pendulum सरल लोलक की गति
* van der pol इक्वेशन
* और lorenz system
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
और scilab 533 वर्शन
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको scilab की बुनियादी जानकारी और odes को कैसे हल करते हैं पता होना चाहिए
scilab सीखने के लिए कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित ट्यूटोरियल्स को देखें
ode फंक्शन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वर है
सिंटेक्स है y इज़ इक्वल टू ode ब्रैकेट में y0 t0 t और f
यहाँ y0 odes की इनिशियल कंडीशन है
t0 इनिशियल टाइम है
t टाइम रेंज है
और f फंक्शन है
एक सिंपल पेंडुलम की गति पर विचार करते हैं
मानिये टाइम t पर वर्टीकल यानि ऊर्ध्वाधर के साथ पेंडुलम द्वारा बनाया गया एंगल theta t है
हमें इनिशियल कंडीशंस दी गयी हैं
theta of zero इज़ इक्वल टू pi by 4 और
theta dash of zero इज़ इक्वल टू 0
फिर पेंडुलम की स्थिति निम्न के द्वारा दी जाती है:
theta डबल डैश t माइनस g by l इनटू sin of theta t इक्वल टू 0
यहाँ g = 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो ग्रैविटी के कारण ऐक्सेलरेशन यानि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है और
l = 05 मीटर पेंडुलम की लम्बाई है
दी गयी इनिशियल कंडीशन्स के लिए हमें टाइम रेंज 0 लेस दैन इक्वल टू t लेस दैन इक्वल टू 5 में ode को हल करना है
हमें सॉल्यूशन को प्लॉट भी करना है
अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोड देखते हैं
scilab एडिटर पर pendulum डॉट sci को खोलते हैं
कोड की पहली लाइन ode की इनिशियल कंडीशन्स को परिभाषित करती है
फिर हम इनिशियल शुरूआती टाइम वैल्यू परिभाषित करते हैं और टाइम रेंज देते हैं
आगे हम दी गयी इक्वेशन को फर्स्ट आर्डर odes के सिस्टम में बदलते हैं
हम g और l की वैल्यूज़ प्रतिस्थापित करते हैं
यहाँ हम y को दिया गया वेरिएबल थीटा और y डैश को थीटा डैश लेते हैं
फिर हम आर्ग्युमेंट्स y 0 t 0 t और फंक्शन पेंडुलम के साथ ode फंक्शन को कॉल करते हैं
इक्वेशन का सॉल्यूशन दो रोज़ वाली मेट्रिक्स होगा
पहली रो दी हुई टाइम रेंज में y की वैल्यूज़ रखेगी
दूसरी रो टाइम रेंज में y डैश की वैल्यूज़ रखेगी
इसलिए हम टाइम के साथ में दोनों रोज़ को प्लॉट करते हैं
pendulum डॉट sci फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करें
प्लॉट दिखाता है कि y और y डैश की वैल्यूज़ टाइम के साथ कैसे बदलती है
scilab कंसोल खोलें
यदि आप y की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो कंसोल पर टाइप करें y और एंटर दबाएं
y और y डैश की वैल्यूज़ प्रदर्शित होती हैं
अब ode फंक्शन प्रयोग करके van der pol इक्वेशन को हल करते हैं
दी गयी इक्वेशन है
v डबल डैश ऑफ़ t प्लस epsilon इनटू v ऑफ़ t स्क्वायर माइनस 1 इनटू v डैश ऑफ़ t प्लस v ऑफ़ t इक्वल टू 0
इनिशियल कंडीशंस हैं v ऑफ़ 2 इक्वल टू 1 और v डैश ऑफ़ 2 इक्वल टू 0
मानिये epsilon इक्वल्स टू 0897
हमें टाइम रेंज 2 लैस दैन t लैस दैन 10 में सॉल्यूशन ज्ञात करना है और फिर सॉल्यूशन को प्लॉट करना है
अब van der pol इक्वेशन के लिए कोड देखते हैं
scilab एडिटर पर जाते हैं और vander pol डॉट sci खोलते हैं
हम odes और टाइम की इनिशियल कंडीशंस को परिभाषित करते हैं और फिर टाइम रेंज को परिभाषित करते हैं
चूँकि इनिशियल टाइम वैल्यू 2 दी गयी है तो हम टाइम रेंज 2 से शुरू करते हैं
फिर फंक्शन vander pol को परिभाषित करते हैं और फर्स्ट आर्डर odes का सिस्टम बनाते हैं
हम epsilon की वैल्यू 0897 रखते हैं
यहाँ y voltage v को दिखाता है
फिर हम ode फंक्शन कॉल करते हैं और इक्वेशन के सिस्टम को हल करते हैं
अंततः हम y और y डैश वर्सेस t प्लॉट करते हैं
फाइल vander pol डॉट sci को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
वोल्टेज वर्सेस टाइम का प्लॉट दिखता है
अब lorenz system of equations पर जाते हैं
lorenz system of equations निम्न प्रकार है:
x 1 डैश इक्वल टू सिग्मा इनटू x 2 माइनस x 1
x 2 डैश इज़ इक्वल टू 1 प्लस r माइनस x 3 इनटू x 1 माइनस x 2 और
x 3 डैश इज़ इक्वल टू x 1 इनटू x 2 माइनस b इनटू x 3
इनिशियल कंडीशन हैं x 1 ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस 10 x 2 ज़ीरो इक्वल्स टू 10 और x 3 ज़ीरो इक्वल्स टू 25
मानिये सिग्मा इक्वल्स टू 10 r इक्वल्स टू 28 और b इक्वल्स टू 8/3
scilab एडिटर पर जाते हैं और lorenz डॉट sci खोलते हैं
हम odes की इनिशियल कंडीशंस को परिभाषित करने से शुरू करते हैं
चूँकि तीन भिन्न odes हैं इसलिए तीन इनिशियल कंडीशंस हैं
फिर हम इनिशियल टाइम कंडीशन और आगे टाइम रेंज को परिभाषित करते हैं
हम फंक्शन lorenz को परिभाषित करते हैं और फिर दिए गए कॉंस्टेंट्स सिग्मा r और b को परिभाषित करते हैं
फिर हम फर्स्ट आर्डर odes को परिभाषित करते हैं
फिर हम lorenz system of equations को हल करने के लिए ode फंक्शन को कॉल करते हैं
हम सॉल्यूशन को x के बराबर करते हैं
फिर हम x 1 x 2 और x 3 को टाइम के वर्सेस प्लॉट करते हैं
lorenz डॉट sci फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
टाइम वर्सेस x 1 x 2 और x 3 का प्लॉट दिखता है
इस tutorial को सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने scilab ode फंक्शन प्रयोग करके ode को हल करने के लिए scilab कोड बनाना सीखा
फिर हमने सॉल्यूशन को प्लॉट करना सीखा
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी नीच दर्शाये लिंक पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद